सब कुछ हल्दी है मिर्चा तेल साबुन निमक बिस्किट सब कुछ है इसमें --

लगा हुआ है उसके बगल मे बहुत अ बहुत सारा एक जगह है बैठने--

यहाँ पंखे है कुर्सी है टेबल है आदमी है पीने के लिए पानी है आदमी बैठे हुए है।